पास ही में एक कोई सफेद रंग का दिखाई --

कुछ ज्वेलरी टंगी हुई नजर आ रही।

कुछ जेवएलरी आगे की तरफ फैली हुई दिखाई दे रही --